इमेज में स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

अ मंदिर पर येलो और पिंक कलर का पेंट किया हुआ है।

दूसरा लड़का उसे कुछ दिखा रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है शॉप के बाहर एक बाइक खडी हुई है।

एक दुकान खुली है बाकि दुकानें बंद हैं।

अ स्विमिंग पूल में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

सभी के हाथो में अलग-अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है।

आ पीछे एक चैनल गेट बना हुआ है।

बहुत सारी प्याज रखी हुई है।

लकड़ी के नाव है एक आदमी किनारे पर खड़ा हुआ है।

आ डमी के पीछे रैक में बहुत सारे कपड़े लगे हुए है।

इमेज में दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ है।

इमेज मे एक बस नजर आ रही है बस मे लोग बैठे हुए है।

अ कुछ टमाटर लाल-लाल हैं और कुछ टमाटर येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं।

आपको चेयरीज लगी हुई है।

आ पौधो पर फूल लगे हुए हैं कुछ फूल येलो कलर के हैं कुछ ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं गेट पर।

इमेज मे बेट पर तबला और हारमोनियम रखा हुआ हे।